इस तस्वीर में एक फलों की दुकान है।

काफी सारे फल भी हैं।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट की है।

नजर आ रहे हैं।

सूँड पे बैठकर अपनी पिक्चर क्लिक करवा रहा है।

बुक स्टोर का है।

जिसमें एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

और पीछे की साइड --

यह पिक्चर नदी के किराने ली गई है।

जिसमें काफी सारे नाम--

इसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

जिसके दूसरे छोर पर--

और इधर साइड काफी सारे पेर -पौधे है।

और एक घर नजर आ रहा है।

व्हाइट टाइल्स और ऊपर लाइट्स लगी हुई है।

जिसमें दो ऑटो नजर आ रही है।

और इसे व्हाइट और पिंक बैलून से डेकोरेट किया गया है।

इस पिक्चण में एक--

जिसके पार कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

आइसक्रीम की फैक्ट्री भी दिख रही है ।

इस पिक्चर में एक होटल की बिल्डिंग है।

जिसका नाम होटल विस्ता पैलेस है।

एस टी पॉल्स इंटरनेशनल हाई स्कूल है।

सेंटा की डेकोरेशन की गई है।

यह पिक्चर एक मैरेज हॉल का है।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

इसके आगे काफी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं।

कुछ कुर्शी और टेबल भी लगे हुए हैं।

पटना हाई इतस्कूल है।

इस पिक्चर में काफी सारे घर नजर आ रहे हैं।

दूसरे पार्क में झूले--

इस पिक्चर में एक कैफे दिख रहा है।

इसमें दो बेंचेस लगे हुए हैं ।

और इसकी डेकोरेशन काफी शानदार है।

पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है।

जिसमें दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में एच_डी_एफ_सी बैंक के --

इसके बाहर कुछ वाहन भी हैं।

नामक एक लेडीज क्लोथ्स की दुकान है।

यह पिक्चर दशहरा के टाइम का हैं जिसमें माँ दुर्गा के अद्भुत प्रतिमा दिख रही है।

सिटी लाइट कैफे है।

इस पिक्चर में काफी सारे गमले--

उसके पीछे काफी बड़ी फील्ड नजर आ रही है।

इसमें काफी सारे पेड़-पौधे और मिट्टी दिख रही है।

इसमें एक टी_वी भी नजर आ रहा है।

और नीचे की साइड वाइट ब्राउन टाइल्स भी है ।

इस पिक्चर में एक घर दिख रहा है जिसका नाम--

माँ वैष्णवी भवन है।

इसके बाहर दो गाड़ियाँ भी नजर आ रही हैं।

चेयर्स और टेबल्स लगी हुई है।

और ऊपर की साइड --

काफी अच्छी डिजाइन बनी हुई है।

जिसका नाम पाटलीपुत्र पार्क है।

एक काफी बड़ा जंगल भी--

इस पिक्चर में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

और यह हॉस्पिटल काफी बड़ा भी है।

इस पिक्चर में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इसमें एक रास्ता काफी सारे बेंचेस भी हैं।

इस पिक्चर में एक स्टील शॉप है।

ऊपर की साइड वाइट लाइट्स लगी हुई है।

सारे सामान अलमीरा में अच्छे से रखे हुए भी हैं।